इस तस्वीर में मुझे एक रोड नजर आ रही है।

बिल्डिंग के मेन गेट के पास मुझे बहोत सारी बाइक्स भी खड़ी हुई नज़र आ रही है और मेन रोड पे कुछ लड़के भी खड़े हुए है।

पिलर के पास मुझे एक गाड़ी नजर आ रही है जो ब्राउन कलर की है। जिसके आगे--

इस तस्वीर में मुझे बहोत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है।

अ सड़क मुझे यहां पे दिखाई दे रही है जहां पे बहोत सारी गाड़ियां चल रही है।

यहां मुझे कुछ काइट्स भी नजर आ रही है।

रूम में मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है और एक बड़ा सा अंदर मिरर भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक सड़क नज़र आ रही है।

एक लड़की मुझे यहां पिलर के पास खड़ी हुई दिखाई दे रही है और एक नीला ड्रम भी मुझे यहां पे दिख रहा है इसे रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग्स नजर आ रही जो व्हाइट कलर की है।

इनके मुझे खिड़कियां भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर मे मुझे एक ग्राउंड नजर आ रहा है जहां हरी भरी घास लगी हुई है।

यहाँ पे दो लोग खड़े हैं जिनके आस पास रेलिंग भी बनी हुई है।

यहां मुझे एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसके आसपास एक लोहे का खंबा और कुछ तारे भी दिखाई दे रही है मुझे यहां पे बड़े-बड़े पेड़ भी नज़र आ रहे हैं और --

इस तस्वीर में मुझे एक बिल्डिंग नजर आ रही है जहां पे रंग बिरंगे पिलर लगे हुए हैं और गिड़कियां भी मुझे यहां दिखाई दे रहे।

यहाँ मुझे आस पास से बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे टीचर बच्चों को पढ़ रहा है और ब्लैकबोर्ड पे--